यहाँ बहुत सारे आदमी और बच्चे बैठे है एक आदमी उनका फोटो ले रहा है।

ये कोई हॉस्पिटल लग रहा है जहां पे बहुत सारी मरीज यहाँ पे लाइन लगा के है एक औरत पीछे घूम के देख रही है।

यहाँ पे लाल और नीला रंग का कार्पेट है सब बच्चे लोग यहाँ पे लाल रंग का टोपी पहने हुए है। बहुत अच्छा लग--

ये तो ये तो कोई शादी का घर लग रहे है ये घर तीन तल्ला मकान है जहां पे बहुत सारा लाइट लग रहे है ये घर बहुत ही सुंदर है।

पत्ते दिख रहे है यहाँ पे बहुत सारे आदमी दिख रही है यहाँ पे मूर्ति के हाथ मे एक बहुत बड़ा त्रिशूल है।

ये तो कोई बैंक के बाहर है एक महिला यहाँ पे बुरखा पहनी हुई है एक आदमी वहाँ पे काला रंग का कपड़ा पहन के बैंक के गेट के पास है यहाँ पे बहुत सारे बाइक राखी हुए है बहुत सारी आदमियाँ हैं।

यहाँ पे एक लड़का है जिसने अजीब-अजीब तरीके से अपना बाल काटा है ये एक सलोन का फोटो लग रहा है पीछे मे एक गीज़र है।

ये तो कोई रोड की फोटो दिख रही है जहां पे बहुत सारा बाइक रखा हुआ है एक आदमी बाइक चलाते हुए जा रहा है दो बस है बहुत सारी दुकान है एक तीन मंजिला बिल्डिंग दिख रही है।

यहाँ बहुत अंधेरा है और यहां पे सबकोई मोमबत्ती जलायें हुए है एक धूप काठी जल रहा है यहाँ पे लाल रंग का स्टैन्ड है।

यह तो कोइ- इ मस्जिद लग रहा है जिसके बाहर मे सबकोई मोमबत्ती जला रहे है पूर्ण ।

और इसके दूर-दूर डब्बा डुब्बी रखा हुआ है ये एक दुकान के जैस लग रहा है।

एक औरत माथे के ऊपर टोकरी लगाए है टोकरी मे बहुत सारे समान रखा हुआ है ये लोग शायद कहीं घूमने जा रहे हैं।

यहा पर बहुत सारी सिर्फ महिला ही दिख रही है दूर से यहा पे बहुत दूर तक पानी दिख रहा है।